जिसमें कुछ जी_एस_टी अलग से लिखा हुआ है उमेश करके--

यहां पर स्टील के चीजे बनाए जाते है जैसे रेलिंग्स --

और बाजू में सैमसंन मोबाइल का एक बोर्ड लगा हुआ है।

ग्रील टाइप का रखा हुआ है यहां स्टील वगैरा बनाई जाती है खिड़की के एंगल भी रखे हुए हैं ये--

पेंसिल कॉपी ग्लू गम यहाँ सब पढ़ाई की चीज़ें मिलती हैं।

वहां पर बहोत ही सुन्दर ब्लू और व्हाइट कलर के बलून से डेकोरेट किया गया है।

पलंग के कुछ पार्ट्स रखे हुए हैं जैसे--

और वहां पर कुछ कैरेट भी रखे हुए है सब्जी वाले--

और ये फूल ज्यादातर हर जगह उगते हैं।

दुर्गा जी और हनुमान जी भी है और कुछ लोग बैठकर वहां पर--

ये एक शूज की शॉप है जहाँ पर बहोत सारे शूज रखे हुए हैं जैसे नाइक और एडीडास स्नीकर्स --

यहां पर कुछ लोग बैठकर मछली काट रहे हैं और कुछ लोग--

मास बेच रहे हैं और घर लेकर जाकर पका कर खाएंगे।

इससे बी लाइट जाने के बाद भी बिजली चलती रहती है ये सोलार सिस्टम धूप से चलता है।

ये एक यूनियन बैंक की फोटो है जहां पर एक बिल्डिंग बनी हुई है और उसके नीचे यूनियन बैंक खुला है।

ये एक पार्क की फोटो लग रही है जहां पर एक--

पाव भाजी पिज़्ज़ा बर्गर कोल्ड कॉफी आइसक्रीम और स्वीट्स वगैरा मिलते हैं।

यहां पर ग्रीन और येलो कलर की ऑटो --